पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है साइड में बिल्डिंगे दिख रही है उसमें काँच दिख रहे है जालियाँ दिख रही क्रीम कलर दिखाई दे रहा है साइड में भी क्रीम कलर दिख रहा।

लोहे का गेट दिख रहा खिड्किया दिख रही व्हाइट कलर दिखरा ब्लू कलर साईड मे एक छोटी सी बिल्डिंग दिखरी उसमे व्हाइट कलर दिख रा खिड़की दिख रही --

ग्राउंड दिख रहा है स्कूटीया दिख रही बहुत सारी स्कूटी रखी हुई पड़ी है सीढ़िया दिख रही है एक घर दिख रहा है उसमे पोस्टर बना दिख रहा एक लड़की दिख रही है लड़की की पोस्टर बना हुआ हुआ दिख रहा है। उसका साड़ी कलर ऑरेंज दिख रा है।

ई स्केलटन सिस्टम दिख रहा है उसके हात दिख रहे है पेल भी गोल दिखरी दिख रहा है।

टार्सेल दिखरी मेट टार्सेल दिखरी का अलमेटा बोन्स रेडिअस काँच मे रखा हुआ दिख रहा है।

कार दिख रही है पेड़ दिख रहे है ग्राउंड दिख रहे है एक लडका खड़ा दिख रहा है खिडकी दिख रही है गेट --

ग्रीन कलर दिख रहा है उपर बीच में काँच लगा हुआ दिख रहा है नीचे काँच दिख रहा है जालिया दिख रही है खिड़की दिख रही है।

चद्दर दिख रही व्हाइट कलर की दो-तीन घर दिख रहे है सड़क दिख रहे है रोड दिख रहे पत्थर दिख रहा है घास दिख रहा है रेड मिट्ठी दिख रही।

स्पीकर दिख रहा लाइट दिख रही चॉकलेटी कलर सा दिख रहा कप दिख रहा मग दिख रहा।